हो रही है मुझे इस फोटो में--

मुझे इस फोटो में गैरेज नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में कार नजर आ --

तो हमें पेड़ नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में मशीन नजर आ रही है मुझे इस फोटो में पट्टी नजर आ रही है।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

मुझे इस फोटो में ए_सी_एन_टी_एल पर--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

मुझे इस फोटो में मिर्ची नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो में आलू नजर आ रहा हैं।

मशीनें नज़र आ रही हैं मुझे इस--

मुझे इस फोटो में मशीने नजर आ रही--

मुझे इस फोटो में पंप नजर आ रहा हैं।

मुझे इस फोटो में फ्रिज नजर आ रही--

इस फोटो में टा नजर आ रही--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

फर्श नजर आ रहा है। मुझे इस फोटो में पी_ओ_पी नजर आ रही है मुझे इस फोटो में--

मुझे इस फोटो में जू नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में बच्चे नजर आ रहे--

इस फोटो में एक टेबल नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो में पर्दे नजर आ रहे है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

मुझे इस फोटो में पौधे नजर आ रहे--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

मुझे इस फोटो मे खिड़की नजर आ--

फोटो में डेकोरेशन नजर आ रहा--